तैयार करते है।

यहाँ ये मैदान है यहाँ पे भी शाम होने नज़र आने को है यहाँ पे एक बच्चा मैदान उम्म्म--

यह एक जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ नज़र आ रही है दो आदमी घर पे है।

ये भी इंडियन ये भी इंडियन ऑइल पेट्रोल पंक है